ये चित्र मा हम तें एक हरी टाट पट्टी का एंच कुछ कुर्सी छा दिखेणी जौं कु रंग लाल छा अर कुछ लोग छा दिखेणा।

सड़की का ही किनारा बिटि हम तें एक बड़ी सफेद इमारत छ दिख्येंणी जे का एंच एक बोर्ड भी छ लग्युं जे पर सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया छ लिख्युं।